और एक व्यक्ति स्टेट पर खड़ा दिखाई दे रहा हे। स्टेट पे एक बोहत बड़ा सोफ़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बोहोत बड़ी भगवान की फोटो लगी हुई भी नज़र --

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ऊपर बहुत सारे केले टंगे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर साइड में भी कुछ ठेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर की बास्केट पर पेपर बिछे हैं फिर उनके ऊपर फ्रूट्स रखे हुए दिखाई दे रहे-- ।

नदी में काफी सारी कचरा और मिट्टी भी दिखाई दे रही है और नदी के आस-पास कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जिन में कुछ पेड़ बड़े और कुछ पेड़ छोटे नजर आ रहे है यहाँ पर नीला-नीला आसमान नजर आ रहा है।

ये इमेज एक स्कूल की है। यहाँ पर बड़ी-बड़ी बेंचे रखी दिखाई दे रही हैं जिस पर कलर्स पेपर कैंची वगेरा रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ पेन भी लगे हुए नजर आ रहे है यहाँ पर साइड में चप्पलें रखी दिखाई दे रही है और कुछ समान भी रखा हुआ नजर आ रहा है।